इस चित्र में एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसके डाले पर एक फूलों मालाओ द्वारा सजा कर एक व्यक्ति बैठा हुआ है|

और यहाँ पर कई हरे-भरे पेड़ क्रमबद्ध में लगे हुए हैं और उधर एक ऊंची बिल्डिंग भी है जो काफी शानदार दिख रही है और ये हरा मैदान है जो घास से घेरा --

और यहाँ पर सभी भूरे रंग की बकरियां दिखाई दे रही है जो खाती हुई दिखाई दे रही है इसके चारों ओर जाल घिरा हुआ है।